यहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है मैदान खाली दिख रहा--

इस पर पीच रंग पेंटेड है।

जो माला डाले हुए है।

और कुछ हरी घास लगी हुयी है।

जिसमे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर लोहे के दो खम्बे दिखाई दे रहे है।

यहाँ आसमान में बादल दिखाई दे रहे है।

एक काले और लाल रंग की दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहाँ फर्श का रंग ऑरेंज दिखाई दे रहा है बहोत सा सामान दिखाई दे रहा है।

पीला और गुलाबी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत लोगों की भीड़ लगी हुई है।